इसके कारण आसमान में ऑरेंज कलर के बादल छाए हुए हैं।

आस पास व्हाइट कलर की दीवारों की ही बाउंड्री की गई है।